वहाँ पे एक बेकरी हैं बेकरी में बहोत सारे केक्स हैं।

बहुत सारे बटर स्कॉच फ्लेवर जैसे कि अह--

वनीला फ्लेवर चॉकलेट फ्लेवर और भी बहोत सारे मिठाइयां भी रखी हुई हैं कुछ चॉकलेट्स हैं चॉकलेट्स बहोत अच्छे दिख रहे हैं।

एक शॉपिंग मॉल हैं जहाँ पे बहोत सारी ग्रोसरी के सामान रखें हुए हैं बहोत सारी परफ्यूम की बोतल हैं कु --

जो पंडित जी हैं वो मंत्र पढ़ रहे हैं साइड में गुलाब और बहोत सारे फूलों की सजा--

एक जगह है जहां पे दो-चार गाय खड़ी--

गाय हैं गाय को रखा गया है।

और पीछे ओर एक गाय भी सजा हुआ है उसके पीछे बहुत सारे--

छांव में बैठे हुए हैं पानी की सुविधा भी है साइड में जंगल है।

कुछ लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं।